सजल हई इंकार कार है देखने में बहुत अच्छा लगता है कार गैरेज में एक आदमी ठीक कर रहा है एक आदमी का हाथ दिखाई --

बहुत सारे हॉर्न भी लगाए हुए हैं डी.जे. का गाङी बहुत दिखने में अच्छा लगता है बहुत सारे आदमी भी है जनरेटर है।

बहुत सुंदर लगता है देखने में ये।